यहाँ कुछ ट्रक्स है प पेट्रोल भी फुल फील हो रहा है।

ब्रिज है जो कि लग रहा है नया बना है सामने सूरज की किरण भी आ रहा है। यहाँ बड़ा सा टावर है उसके थ्रु --

कुछ बटर भी है कुछ पॉकेट वाले केक भी है और बगल में कोल्ड ड्रिंक भी देखने को मिल रहा है।

ये चित्र शाम का समय का है। यहाँ पोखरा और पोखरा के उस साइड रोड है।

रोड पे कई सारी गाड़ियाँ लोग भी हैं चल रहे हैं |

एक दौड़ने वाला है। यहाँ पे साइड में वो भी है बॉक्सिंग बॉक्स ।

जहाँ की पानी के बीच में एक राइनोसेरॉस का --

लाइटिंग बहुत बढ़िया है दो व्यक्ति साइकिल ले रहा और एक व्यक्ति अपने हाथ में गिटार लिया हुआ है।

बोर्ड लगा हुआ है सर्बो जो कि इंजन आयल की कंपनी है।

और ऊपर से बहोत ऊंचाई से पानी गिर रहा है नीचे पोखरी में।

ले दे कर रहा है। वो पैर से पूरे वजन को उठा रहा है।

और बोहोत बढ़ियां है ठट्टर ये।